छवि में हम आसमान देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें तीन मनुष्य दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हम ग्लास को देख सकते हैं।

इस फोटो में हम टावर को भी देख सकते हैं।

इस चित्र में हम एक मनुष्य को देख सकते हैं।

इस फोटो में हमें एक लाइट दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हम एक ए_टी_एम को देख सकते हैं।

इस चित्र में हम दो स्कूटियों को भी देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम मंदिर भी देख पा रहे हैं।

इस छवि में हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में हम घरों को भी देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम हरी घासो को भी देख सकते हैं।

इस चित्र में हम बहुत सारे मनुष्य को भी देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम एक हथोड़ा देख सकते हैं।

इस छवि में हम आसमान देख सकते हैं।

इस चित्र में हमें एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें पर्दा दिखाई दे रहा है।

इस छवि में हम सुबह का समय देख पा रहे हैं।

इस तस्वीर में हम बहुत सारे साइकिलों को भी देख सकते हैं।

इस छवि में हमें कैंची दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहोत से लाइटें भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें लाइट दिखाई दे रही हैं ।